गमलों में पौधे ने लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

इमेज में यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर बेड लगा हुआ है।

इस इमेज में यहां पे एक कॉलेज दिखाई दे रहा है जहां पर गेट के बाहर --

इस इमेज मे सामने प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है जहां पर एक ट्रेन खड़ी हुई है।

इस इमेज में सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसका शटर बंद है।

और ऊपर एक्सपर्ट शूज लिखा दिखाई दे रहा हैं--

इस इमेज में सामने बैंक्वेट हॉल दिखाई दे रहा है रोड पर कुछ रिक्शा चल रहीं है।

और कुर्सी टेबल लगे नज़र आ रहे हैं।